और इधर साइड में एक स्टूल पड़ी है लकड़ी की पीछे चाट बने हुए चार पांच बड़े बड़े।

इधर एक ग्राउंड बना हुआ है ग्राउंड के अंदर छोटी छोटी लड़कियां पड़ी है छोटे छोटे पत्थर पडे है।

पीछे एक डिफरेंट कलर की गाड़ी खड़ी है इधर एक छोटी सी स्टूल पड़ी है और सामने दीवार पर कुछ ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

नीचे बहोत सारे बेचें पड़ी है जो की लोहे की है और ऊपर से येलो कलर की है।

इधर एक लोहे की खिड़की लगी हुई है खिड़की के पीछे बहोत सारे पत्थर पड़े हैं।

इस तस्वीर के अंदर सामने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बन रही है बिल्डिंग के अंदर अलग अलग रूम बन रहे है।

यह एक सामने एक दुकान है दुकान के अंदर बहोत सारे टायर पड़े है ब्लैक कलर के--

अंदर कांच के दरवाजे लगे हुए हैं और सामने कुछ खिड़कियां लगी हुई हैं इधर साइड सामान--